और दवाई दे रही है बोहोत सारे लोग दिखाने --

यहाँ पे तरह-तरह की मशीनओ द्वारा --

यह मुस्कान नर्सिंग होम लखीसराय है यहाँ पे इस नर्सिंग होम में बहुत सारे आदमी आये हुए हैं ।